यहां पे बोहोत सारे जी लोग जिम सीखते हैं और यहां पे लाइट वगैरा भी बोहोत सारी लगी हुई हैं।

ये घर है घर में बहोत कलर की लाइटें लगी हुई है पीले कलर से रंगा हुआ है।

नीचे चटाई बिछी ही है यह मंदिर को अच्छा से सजा हुआ है और लाइट वगैरा भी लगी हुई है।

यहां पे पड़ोस में बिल्डिंग भी बनी हुई है यहां पे कुछ कुर्सियां भी प पड़ी हुई हैं।

ये गुलदस्ते हैं यह हर कलर के गुलदस्ते यहां पे रखे हुए हैं।

छोटे हैं और कुछ बड़े हैं यहाँ पे बोरिया सफ़ेद रखी हुई हैं यहाँ पे लोहे का।

स्विमिंग पूल देखने में बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बहुत अच्छा लग रहा है।